हेयर कट कटाने के लिए ये लड़कियों का सैलून है।

और यहाँ पे अम्म कोई ढोलक बजा रहे हैं कोई पियानो बजा रहे --